जो की फीमेल जनरल वोर्ड है।

और कुछ व्यक्ति भी खड़े हुए हैं।

के बने हुए समान भी रखे हुए हैं।

और पीछे होटल को बहुत सुंदर तरीके से सजाया हुआ है।

और बहुत सारी लाइटें भी लगाई हुई है।

इसके अंदर बहुत सारे पर्दे लगे हुए हैं।

और एक लोहे का गेट लगा हुआ है।